शटर दिख रहा है। ये हॉल इधर ये पीछे वाइट जंगले की तरह दिख रहा है और ये सब --

यहां झील बह रहा है और ये पहाड़ पहाड़ी है और ये सब पेड़ पौधे --